काफी सारे लोग देखिए काफी सारे लोग है लड़का हैलडकियाँ है ।

यह एक रेस्टोरेंट है । जिसपे रेस्टोरेंट है देखिएटेबल चेयर्स वगेरह --

काफी सारे महापुरुष जी का तस्वीर लगाया हुआ है । किया जाता है ।

ये भोले बाबा का मंदिर है । देखिये इसमे कुछ जल अर्पित किया जा रहा है ।

ब्यूटी पार्लर दिखाई --

देखिए वो हरे-हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं । काफी ज्यादा हरे हरे पेड़ --

देखिए यहाँ पे काफी सारे लोग हैं |

लगाने की कोशिश कर रहे हैं ।

और उसमे सेल्फी खिचवा रहे है चेयर्स रखी हुई है ।